बीच में एक येलो कलर का छाता लगा|--

एक क्लासरूम है । यह क्लास ट्वेल्व कॉमर्स क्लास का रूम है । यहाँ पर बहोत सारी सफेद रंग डेस्क और बेंच रखी हुई --